और यहां पे ये रूम ब्याह के लिए अपना भाड़ा दीए होता--

और यहां पे बॉल भी एक है और देखिए--

यहां पे दो--

देखिए ये ब्यूटी पार्लर और ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे प्रकार के सामान रखें हैं अपना फेस पर लगाने के लिए और पार्लर में--

देखिए यहां पे मिठाय का दोकान है और मिठाई सभी प्रकार की मिठाई यहां पे मिलता है और यहां पे आदमी सब खरीदने आते हैं मिठाय देखिये।

ये बड्डे का डेकोरेशन सजा हुआ है और यहां पे अपने फ्रेंड के बड्डे में यहां पे पार्टिसिपेंट करने आई हैं लड़की लोग देखे यहां पे--

देखिए यहां पे पार्क है पार्क के बीच में बहुत सारे पेड़ पौधा और एक मंदिर भी है।

देखिए बहुत उँ पुराना बिल्डिंग है देखिए यहां पे बहुत सारे पेड़ पौधा भी है।

और देखिए घूमने गया है अपना--

देखिए यहां पर रूम है और एक रूम में टीवी टी_वी लगा हुआ है और यहां पर खिड़की में पर्दा लगा हुआ है।